और शेर के बगल में दो-दो मूर्तियां मूर्तियां जैसे स्टेचू लगे हुए हैं जो बहोत प्यारे लग रहे हैं। इस पार्क के बाहर दो रेलिंगे भी लगी हुई हैं आने जाने के लिए। यह पार्क बोहोत खूबसूरत लग रहा है देखने मे।

और रेलवे के दूसरी तरफ बोहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं। कुछ कुत्ते भी नजर आ रहे हैं जो स्टेशन पे बेठे हुए हैं।